और समान है एक बच्ची भी उधर से देख रही है।

जहाँ आदमी को पहुँचाया जाता है एक आदमी वहीं पर बैठे हुए हैं और उसका देख-भाल कर रहे है।

और बहुत ही सुंदर लग रही है।

एक आदमी मोबाइल से बात कर रहें हैं और एक सर --

उसमे रेट भी लिखा हुआ है और बिस्किट भी रखी है।

एक बहुत बड़ा भगवन है जहां पर एक बहुत ही सुन्दर मं मंच बना हुआ है।

एक सुबह मॉर्निंग करने के लिए एक बड़ी रास्ता है।

मछली बहुत सारी है और कुछ मछली कटी हुई है और कुछ अ अच्छी रखी हुई है।